ये देखिए मार्केट मतलब चारो ओर बिल्डिंग है अलग-अलग का भी बाइक है दुकान भी देखिए स्प्राइट का भी दुकान है यहाँ पे देखिए बाइक अजीब-अजीब तरीके से लगे हुए हैं दोनों साइड बाइक लगे हुए हैं आगे हाँ ऊपर में देखिए पोस्टर है दुकान के भी ऊपर पोस्टर है।